रखे हुए हैं और फूल लगे हुए--

है जहां पर गुलाबी रंगों के फूल खिले हुए हैं।

मशी की अध्यापिका दिखाई दे रही है जो अपने भक्तों--

सारे पेड़ लगे हुए हैं और यहां पर बहोत ही गंध मचा हुआ है।

पर एक ए_सी भी लगा हुआ--

बच्चे अपना दृश्य एवं अपना नाच दिखा रहे हैं।

कपड़े पहने हुए हैं यह लड़के देखने में बहुत सुंदर है।

है जिसमें लोहे की पाइपे लगाई है जिसमें--

जोकि बहोत ही खूबसूरती से सजाए गए हैं।

ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है येह बो--

यह एक बहोत ही बड़ी गली दिखाई गई है।